टायर की अहम अहमता रहती है सभी उपकरण में उपयोग लेने के लिए टायर एक बड़ा व्यापार है जो की --

शोरूम वर्क शॉप को दर्शाया गया है ऑटोमोबाइल अपने आप में एक बड़ी दुनिया है आजकल के इस युग में जहां एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है वही ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

काफी विस्तृत से जनसंख्या को लेने के बाद भी ये हॉस्पिटल --

दृश्य में सामुदायिक केंद्र को दर्शाया गया है सामुदायिक केंद्र नाम सुनते ही हमें एक तरफ सरकारी सामुदायिक केंद्र का दृश्य आता है।

दृश्य में आया है आज कल के जो बढ़ते हुए कल्चर को हम देखें तो सैलून की दुकान भी काफी मॉडर्न हो चुकी है।

आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं की किस प्रकार से एक शीशे में बंद सैलून की दुकान है जो की काफी फेमस है इसका नामकरण भी किया गया है।

आजकल के आधुनिक युग में भाग दौड़ी भरी जिंदगी में--

जिम सेंटर एक माहौल तैयार करता है प्रेरित करता है लोगों के साथ अपने शरीर मस्तिष्क मन को स्वस्थ रखने के लिए जो की काफी आवश्यक है।

जोकि हमारे राष्ट्रीय पशु पक्षी धरोवर चित्रों को दर्शाते हैं और याद दिलाते हैं।

रेलवे स्टेशन अपने आप मे इसलिए भी विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि प्रिंट दुनिया मे जानी जाती --

जिस प्रकार से हम एक स्थान में दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद हमारी जो व्हीकल है उसको रखने के लिए जो स्थान होता है उसे पार्किंग स्थान कहा जाता है।

आवश्यक रूप से पार्किंग स्थल पे ही पार्क किया जाना आवश्यक हैं।

आकर्षक बनाती आजकल इस प्रकार के होटल इस प्रकार के रेस्टोरेंट भी काफी आकर्षक रोचक देखने को नजर आ रहे हैं।